मजबूत और काफी बड़ा हैं यहाँ पर आस पास काफी जंगल दिख रहे हैं बड़े बड़े पत्थर दिख रहे हैं पूल काफी मजबूत और काफी अच्छा बना हुआ हैं और यहाँ आसमान दिख रहा हैं जो भी बादल हैं बारिश का उजाल दिख रहा हैं पानी काफी साफ साफ दिख रहा है।

और यहाँ पर बच्चे काफी इन्जॉय कर रहे हैं एक महिला जो की रस्सि कूद रही हैं बच्चे साइकिल चला रहे हैं खेल रहे हैं कूद रहे घिसक रहे हैं और यहाँ--

रसोई घर दिख रही हैं जिसमे खाना बनाया जाता हैंरेस्टोरेंट दिख रहा हैं और यहाँ पे पंखा लगा हुआ हैं छः टेबल्स के नीचे--

ओर यहाँ पर तीन रास्ते दिख रहे है पहाड़ के ऊपर फिर एक पहाड़ के ऊपर फिर एक और पहाड़ के ऊपर और यहाँ पर बहुत सारी बाइक चल रही है कार चल रही है ट्रैक्टर चल रहे है ये रस्ते हाईवे बारे है आसपास काफी जंगल --

यहाँ पे एक बड़ा सा पहाड़ दिख रहा है रास्ता दिख रहा है जो की बन रहा है और यहाँ पर कुछ लगा हुआ है और यहाँ पर काफी मिटटी दिख रही है रेत दिख रही है ढेर दिख रहे है मिट्टियों के --